पीछे सफ़ेद कलर की दीवाल दिखाई दे रही हैं और ये कुछ मंदिरों की जैसी दिखाई दे रही हैं यह प्रतिमा हैं जैसी मंदिर मोम की बनी हो--

वहां चार आदमी भी बैठे हुए हैं और वह चारो के चारो एक शर्ट पेहने हुए हैं नीले कलर का लड़का सा--

ये प्लेट में बिरयानी रखा हुआ है ये मुर्गे का हाड़ दिख रहा है टीसू पेपर भी रखे हुए है जैसे कोई खा कर गया हो बिरयानी एक पानी की बोतल भी रखा हैं।

बलून भी लगे हुए है कुछ येलो कलर के है कुछ नीले कलर के है बोहोत ही बेहतरीन --